साबुन ईनो के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां लाल कलर की अ स्लाइडिंग लगी हुई है।

यहां हमें एक कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है।